यहां पर एक नाइफ पड़ी हुई दिखाई दे रही है| यहां पर एक लड़के खड़े हुए हैं जिनके हाथ में बेड है| यहाँ पर एक वाइट कलर की रस्सी बंधी हुई है| यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ कुछ पर्दा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है|

दीवार पर दो बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पर से एक नेट लगी हुई दिखाई दे रही है| यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं|

छत मे कुछ वाइट कलर के पंखे दिखाई दे रहे हैं | दीवार पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है | ये जगह काफी बड़ी है |

की एक बड़ा-सा बड़ी सी जगह है जिसके ऊपर तीन डला हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ वाइट कलर की लाइट लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

जो एक न्यू टेबल पर रखे हुए है यहाँ पर टेबल पर बड़े-बड़े टोकरे रखे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ स्टूल भी रखे हुए है।

अंदर कुछ गड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही है | एक घर दिखाई दे रहा है | बड़े -बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं | यह नजारा शाम का है |

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो येलो कलर की है जिसमें दो फ्लोर दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दो माइक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इस --

यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं कुछ ऑटो और कुछ स्कूटी जाते हुए दिखाई दे रहें है यहाँ पे येलो कलर के टीशर्ट में एक लड़का बैठा हुआ है सामने एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है।

के सामने कुछ बड़े-बड़े पन्नी के कटे रखे हुए है जो पिंक ग्रीन और ब्लैक कलर के है यहां पर दो लोग खड़े हुए है बाहर एक बुजुर्ग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहा पर एक बड़ा-सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।